जैसे आदमी को कही भी सतर्क रहने हो परेशानी में पहुंच पाते हैं।

पर बहोत ही सुंदर और सिम्पल जगह है यहां पर एक भी है।

यह एक बहोत ही खूबसूरत जगह है देखने में बहोत ही सुंदर है यहाँ एक लोग हैं जो अपने टेबल पर बैठ कर काम कर रहे --